और यहाँ पर एक मेज रखा हुआ है जो कि लाल रंग का है यहाँ पर जमीन पर हरे रंग का मेट बिछा हुआ है।

इमेज में बहोत सी खाली जमीन दिखाई दे रही है और यहाँ पे कुछ हरे रंग के पौधे दिखाई दे रहे हैं इस इमेज में एक मकान का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है।